बगल में फैविक्यूक का फेवीगम भी रखा गया हुआ है बगल में स्क्रैच करने वाला इसकी--

जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसमें कुछ वेटर भी काम कर रहे हैं जो कि यहां पे खाना खिलाने का काम करते हैं।

इसके बगल में कुछ पे पोस्टर लगा गया है जो कि मोबिल का शायद लग रहा है उसके बगल में तीन चार बाइक खड़ा गया किया गया हैं।

यह एक रोड ढालने वाला मशीन है जो कि सबसे बड़ा गाड़ी में लगा गया हुआ है और इसके बगल में कुछ मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है यहां पे फूल का फ्लावर लगाया गया है ये बहोत तीन मंजिल का बिल्डिंग हैं।

इसके बगल में सोफा दिखाई दे रहा है यहां पे लड़की सब डांस करने में पूरा माहौल--

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें बहोत सारे बुक रखे हुए हैं अनगिनत बुक रखे हुए हैं यहां पे ब्लैक कलर का रैक दिया गया है जो की चार रैक है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें क्रिसमस डे का कार्टून भी टांगा गया हुआ है यहाँ पे पंखा लगा गया हुआ है यहाँ पे सी_सी_टी_वी वाला कैमरा भी लगाया हुआ--

यह एक रोड है इसके बगल में कोई मोहल्ला है यहाँ पे तीन-चार कलर का घर दिखाई दे रहा हैं यहाँ गेट के बगल में कुछ पोस्टर जैसा भी लगाया गया हुआ है।

और पेशेंट तो बैठे हुए है नीचे ग्रीन कलर का डब्बा रखा गया हुआ है और इसपे बेड जो है वह ब्लू कलर का है।

यहाँ पे नीचे डस्टर रखा गया है जिसमें पैर शायद पूछा जाता है और यह वाइट कलर का टाइल्स हैं।

यह एक कॉलेज है जिसमें फंक्शन किया जा रहा है और इस फंक्शन में देखिए टीचर यहाँ पर माइक के सामने खड़े हुए हैं दो-तीन लड़की भी बैठी हुई हैं।

ये एक शादी का माहौल है जहां पे खुशी का माहौल लग रहा है वहां पे दो तीन लड़की और दो तीन लड़का नाच कर रहे हैं और एक मशीन आता है जिससे धुंआ निकलता है।

और यहाँ पे पीछे पंडाल लगाया गया हुआ है पोस्टर लगाया गया हुआ है वाइट कलर का पंडाल यहाँ पे टांगा गया हुआ है और लड़की सब बब लाल कलर का श --

ये एक कोचिंग है जिसमें बहोत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वाइट कलर का यहाँ पे टेबुल लगाया गया हुआ है टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे है और वाइट कलर का यहाँ पे पूड़ा देवार पेंट किया गया है।

एक पेड़ का बगीचा है जिसमें पेड़ छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं यहां से उखाड़ के बेचे जाते हैं ऊपर देखिए ग्रीन कलर का मच्छरदानी लगा गया हुआ है।

और बगल में कितने बढ़िया बढ़िया कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहां पे रोड भी बनाए गए हुए हैं जिसमें से आदमी आ के देख सकते है पेड़ पौधा कैसा है।

बहोत सारे स्टूडेंट है और ला रेड कलर का यहां पे टेबुल लगा गया हुआ--

और वाइट और ब्लू कलर का यहाँ पे दीवार रंगा गया है ऊपर देखिए तो पंखा लगा हुआ है तीन चार रोशनदान है और--

जिसमें हाथ वाथ धो सकते हैं लोग यहाँ पे इंग्लिश टंकी और हिंदी टंकी भी लगाया गया हुआ।

और यहाँ पे डॉक्टर सिखाए भी जाते है और यहाँ पे देखिए मलहम-वहलम भी बिका जा रहा है और साइड में एक दुकान है जो कि चश्मा का दुकान है।

इसके नीचे पेपर लगाया गया हुआ है ये जामुन देखिए गुच्छे में है भी और ब्लैक कलर में लग रहा है जैसे ताजा ताजा तोड़ के लाया हुआ है।

और यहाँ पे वाइट कलर का रैक भी बन रहा है और शीशा मिनर विनर सब कुछ यहाँ पे बनता हैं।

कुर्सी वोर्सी सब कुछ और यह व्हाइट कलर का है व्हाइट कलर का यहां पे दीवार भी लगाया गया हुआ है ये बहुत बड़ा शोरूम लग रहा है।

और यहां पे सामने देख लीजिये एक वो पोस्टर लगाया गया हुआ है जो की दिखाई पूरा साफ से नहीं दे रहा है और बढ़िया से दुकान बन रहा है।

और यहाँ पे तिरंगा जैसे झंडा नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई पोस्टर टांगा गया हुआ है जो कि स्वच्छ बनाया स्वच्छ रखने के लिए टांगा गया है।

और यहां पे देखिए साइड में साइकिल वाइकिल लगा हुआ है यहां पे एक बूढ़ा अंकल जा रहे हैं जो की स्टेशन से बाहर जा रहे हैं अभी।

बहोत सारे आदमी देखने के लिए आए हुए हैं यहां पे ब्लैक कलर में भी एक लड़की खरा है जोकि सबसे ऊपर है ये लग रहा है सबसे मेन --